खुला और हरा भरा मैदान दिखाया गया है।

यह एक रेस्टोरेंट का चित्र है जिसपे की--

कुछ बाइक्स का कलर लाल है और कुछ बाइक्स का कलर काला है इस शोरूम का नाम बजाज है।

इस चित्र में एक मकान दिख रहा है।

इस चित्र में बहोत से मजदूर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

बगीचे में बहोत सारे फूलों की क्यारियां भी हैं।

यह चित्र किसी रेस्टोरेंट का चित्र है।

वहीं बीच बीच में कुछ काले रंग की कुर्सियां भी दिख रही हैं।

खिड़कियों पर कहीं पर लाल रंग है और कहीं पर हरा रंग भी है।

इस चित्र में ऊपर नीला आसमान दिखाई दे रहा है।

यह चित्र एक सुंदर सी ज्वेलरी शॉप का चित्र है।

चित्र में पीछे आलमारियों में बहुत सुंदर सुंदर से गहने रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह चित्र एक दुकान का प्रतीत हो रहा है।